एक व्यक्ति बैठा हैं जिसकी टी शर्ट का कलर येलो हैं उसके बाल दिख रहे हैं।

यह एक क्लासरूम है जिसमें बहुत सारी टेबल और ब्रेनच रखी हुई है पीछे दो विंडो दिखाई दे रही है दो फैन लगे है ऊपर और एक ट्यूबलाइट एक चेयर है जो रेड कलर की है।

अलग -अलग सर्कल्स बना कर बैठें और लाइटिंग के दो खंभे लगे हुए दिन में लाइटिंग के बिल्डिंग दिख रही है बिल्डिंग में विंडो दिख रही है और पेड़ दिख रहे आसमान दिख रहा--

--दो व्यक्ति बैग रखे हुए है और दो फैन लगे है जिनका कलर ब्लैक है एक सिसिटिवी कैमरा है एक घड़ी लगी हुई--

और एक व्यक्ति ने ब्लू कलर की टी -शर्ट पहन रखी है दूसरे ने वाइट कलर की टी -शर्ट पहन रखी है और एक व्यक्ति बाजू में खड़ा हुआ है नीचे ग्रीन कलर की कालीन बिछी हुई है।

यह एक स्टेज है स्टेज पर एक लड़की परफॉरमेंस कर रही है और उसका लहंगा--

टावेल रखा है जिसका कलर ग्रीन है एक पॉलिथीन खींचे है जो कि ऑरेंज कलर कि है थैला दिखा--

ब्लैक कलर की और एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। मीटर लगा हुआ है। अंदर एक कोई चेयर लगा है। विंडो दिखाई दे रही है।

रेलिंग है एक कार है और बिल्डिंग की विंडो दिखाई दे रही है और वहाँ पर एक बिजली का --